चित्र में दोपहर का समय लग रहा है और रोड पर ऑटो ठहरे हुए हैं बीचों-बीच एक रोड पर--

ऊपर के बाउंड्री किसी की सफेद है किसी की पीली है किसी की नीले रंग से रंगी गयी--

ये चित्र एक योगा मंदिर की नजर आ रही है नीचे की ओर ढेर सारे मनुष्य योगा कर रहे है ऊपर एक योग कक्ष बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं।